यह एक ऑफिस की इमेज है।

पास ही एक डस्टबिन है डस्टबिन का रंग नीला है।

उनके सिर पर पॉलीथिन है दोनों ने व्हाइट शर्ट और काली पेंट पहनी हुई है।

ये कीड़े जो हैं ईनके बाल हैं।

जो एक दरवाजे पे खड़ा है।

यह इमेज एक दुकान की है।

इस इमेज में एक कमरा दिखाया हुआ है।

जो बहोत बड़ी मशीन है इसके अंदर कुछ डिवाइसेस लगे हुए हैं।

यह एक ऑफिस की इमेज़ है।

इसमें कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

कमरे में ए_सी लगा हुआ है लाइट चल रही है।

इसमें एक टेबल पर एक बहोत बड़ी मछली दिखाई दे रही है।

एक ऑटो भी है यह जगह कच्ची है और ये कच्ची जगह में बनी--

इसके गाड़ी के बहुत सारे टायर्स दिखाई दे रहे हैं।

और उसके सामने एक अलमारी दिखाई दे रही है जो कि ब--